अति ही सुंदर मन्दिर दिखाई दे रहा है जिसमे ब्लैक कलर की मूर्ति रखी हुई है और--

-- और बहोत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर मन्दिर मे कलर हुआ है।

यहाँ बहोत ही सुंदर अम कांच लगे हुए है।

यह बहुत ही अच्छी नदी दिख रही है और बड़े-बड़े पहाड़ भी है और यह बड़े-बड़े पहाड़ के ऊपर भी अं पेड़ लगे हुए हैं।

भी लगे हुए है कार भी बहोत सुंदर से खड़ी हुई--

मंदिर भी बहुत सुंदर दिख रहा--

बहुत सुंदर होटल दिख रही है और इस होटल में यह फोटो बहुत सुंदर खींची--

दिखाई दे रहा है आसमान तो बहुत ही सुंदर दिख रहा--

टोल है और टोल्स भी लगे हुए है बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहे है।

यहाँ बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई दे रहा--